और पेड़ पौधे भी बहोत सारे दिख रहे हैं।

सड़क भी दिख रही है साइकिल सब दिख रही है बहुत सारी लोग भी दिख रहे हैं।

बाइक दिख रही है और भी सामान सब बहुत सारे घर ही है कुछ सामान रखे हुए हैं।

और मुझे जैसा और गिरे हुए है और बहोत सारे कार ओर गाड़ी उड़ी दिख रहे हैं लोहा के लगे हुए हैं भैया।

बहोत सारे लोग हैं इकट्ठे हुए हैं एक आदमी है जो सेल्फी ले रहे हैं।

और घर जइसन दिख रहे है जिस पे पोस्टर लगे हुए है बहुत सारे बाइक भी दिख रहे हैं और घरें भी दिख रहे हैं।

मंडप की तरह और उसमें बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं बाहर हैं जो मोर के डिजाइन बने हुए हैं और फूल लगे हुए हैं।

और बहुत सारे लाइट रहे है।

एक पेपर भी दिख रही है एक छोटा सा डब्बा दिख रही जिसमें चित्र बनी हुई है और ऊपर भगवान जी सब दिख रहे बहोत सारी लाइट जल रहे हैं।

यह एक मॉल है जिसमें बहुत सारे सामान रखते हुए मॉल में--

और ओ सारा लाइट जल रहे हैं उसमें--

और गिट्टी ऊटी दिख रहे है बहोत सारे सामान दिख रहे हैं।

पढ़ने के लिए आए बहोत सारी लड़कियां है जो पढ रही हैं बुक रखी हुई हजारों बुक्स रखी हुई है।

और हरे कलर के पर्दे लगे हुए हैं उसमें भी लाइट जल रहे हैं।

बहुत सारे गाछी भी दिख रहे हैं एक सूखे पेड़ दिख रहे है पेड़ के ऊपर एक चिड़िया दिख रही है।